ये एक डेवलपमेंट का ऑफिस है ये दो मंजिल का है।

इस मैरिज होम को बहुत सुंदर-सुंदर नीले रंग की ऑरेंज कलर की लाइटों से --

यहां पर झल्लर भी लगी हुई है ब बाहर की तरफ बहुत लाइटें भी लगी हुई है ।

ये पेट्रोल पंप है यहां पर --

एक कछुआ बैठा हुआ है ग्रे कलर का और छोटी-छोटी हरे रंग की --

रोड पर एक व्यक्ति चल रहा है साइकिल पर पास मे ही एक बहुत बड़ा गुंबद है गुंबद के पास मे --

बहुत से हरे रंग के सुंदर-सुंदर पेड़ लगे हुए हैं ।

ये एक बैंक का वीडियो है एटीएम बैंक --

उनके पीछे एक व्यक्ति शर्ट पहनकर खड़ा हुआ है ।

पास में ही एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

यहां पर बहुत एक बड़ा गार्डन है इस गार्डन मे कुछ पौधे लगे हुए हैं पास मे ही एक बच्चा खड़ा हुआ है नीले रंग के टी-शर्ट पहने हुए ।

लैपटॉप के पास मे ही बहुत सारी फाइलें रखी हुई हैं ।

कैपिटल सर्विस लिखा हुआ है और अलग अलग फोन नंबर भी लिखे हुए हैं।

स्टील के डिजाइन वाले नल लगे हुए हैं और नीचे की तरफ शीट रखी हुई है।

ये एक समुंदर का वीडियो है यहां पर --

खड़ी हुई हैं जो खाली है जिनमें कोई भी नहीं बैठा है।

दीवार पर एक एलसीडी टीवी लगा हुआ --

सोफे पर कुशन रखे हुए हैं अलग-अलग रंग के लाल हरे और पिंक कलर का इनका कवर है।

बी है। जहां पर कुछ सामान रखा हुआ है।

मेला है और छत पर एक पंखा भी लगा हुआ है।

कमरे भी यहां पर बने हुए हैं एंट्री के लिए।

यहां पर पीछे की तरफ हरे-हरे सुंदर-सुंदर पेड़ हैं एक पेड़ केले का है --

यहां पर पीछे की तरफ कुछ बैलून लगे हुए हैं और एक एसी भी लगा हुआ है आगे की तरफ कुछ कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं ।

यह एक गुमान ट्रेडिंग कंपनी है यहां बाहर की तरफ एलजी के --

ये एक मकान के बाहर का वीडियो है।

यहां पर लोहे का एक ब्राउन कलर का गेट है उसके पास में ही एक छोटा सा --

उ उसके अंदर मिट्टी भरी हुई है और पास मे एक बाइक भी खड़ी है ।

टिन श शेड की छत है ।

यह एक बहुत बड़ी दुकान है जहां पर बहुत मोटे मोटे काले रंग के टायर --

रखे हुए हैं य यहां पर टिन शेड की छत है ।

यहां पर बहुत सारे छोटे-छोटे ग्रीन कलर के पौधे --